मुझे मोबाइल और पंखा लाइट भी दिख रही है।

और मुझे लाइट दिख रही है कुछ काउंटर दिख रहे हैं और मशीन दिख रही है।

और मुझे फुटबॉल भी दिख रही है मुझे कुछ खंबे भी दिख रहे हैं।

मुझे एक रोड़ दिखाई दे रहा है।

दुकान में घुस के झूले दिख रहे हैं मुझे पानी की बॉटल दिख रही है रंग बिरंगी लाइट दिख रही है।

वी_मार्ड में कुछ सामान दिख रहा है मुझे कुछ डब्बे दिख रहे हैं।

और कुछ कुर्सियां भी दिख रही है मुझे ये कलर्स दिख रहा है।